यह एक बहुत बड़ा मैदान है शाम का टाइम है जहाँ बहुत से छोटे बच्चे बड़े बच्चे खड़े हुए हैं।

यह एक शोरूम है जिसको बहुत सुंदर सजाया गया हुआ है जिसके ऊपर बाज़ार लिखा हुआ है जो कि नीले रंग का है ।

और एक टी.वी. का डिश है और बगल में कुछ ईटें रखे गये हुए हैं और बहुत से आदमी है कुछ आदमी खड़े हैं कुछ आदमी बैठ के --

और इसके पीछे कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है और नीचे के कुछ पत्थरों पे काइयाँ जम चुकी है ।